और सफेद कलर की दीवाल है नीचे लाल कलर की रद्दी है और --

एक जूता बाहर की ओर है एक लड़का उसके पेट को पकड़ कर के रखा हुआ है।

नीचे की ओर टाइल्स टाइप में दिखाई दे रही है उसका सफेद कलर का --

के वो थोड़ा नीले टाइप में पुता हुआ है सफेद में भी है।

टेबल टाइप में दिख रहा है।

उनके साइड में एक लड़का खड़ा है जिस के हाथ में एक --

नीचे की ओर एक मकान सा बना हुआ है।

मुझे कांच में एक लाल कलर की कुर् --

कुछ आदमी बैठे हुए है दिख रहे है एक टैम्पो खड़ा हुआ है जहाँ आगे की और एक बाल्टी है और कुछ--